जैसे की आप देख सकते हो वो पाइप के मदद से अपन गाडी को ऊपर उठा सकते हैं और वो बन्दे के हाथ में पाइप जैसा है तो शायद गाड़ी को धोने में लगा हुआ है |

और पीछे दो लेडीज चलती हुई कही जा रही है और सीढ़ियों पे भी दो लेडीज बैंक की ओर बढे जा रही है |

जैसे की अपन देख सकते हैं एक गेट में उसको तीन पार्ट में डिवाइड करके उसके ऊपर लिखा हुआ है ई डॉट पि डॉट एस

कोई बोट से उतर रहा है कोई साइड में बैठा हुआ है।

इसमें एक अंकल खड़े हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे | एक अंकल बस के आगे खड़े हुए हैं |

जिसमे बीच-बीच मे बहुत सारे काच्चेश के विंडो बनाए गए जो बंद है।

जैसे अपन देख सकते हैं अपन को इस फोटो में एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जिसका नाम है एच.पी. ।

इस दुकान मे शूज मिलते है जहाँ हम देख सकते है काका बाहर खड़े हुए है ।